uploading and editing resources in moodle पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
यह tutorial: ubuntu linux os 1604
xampp 5630 से प्राप्त apache mariadb और php
moodle 33 और firefox web browser का उपयोग करके रिकॉर्ड किया गया है
हालांकि internet explorer का उपयोग न करें क्योंकि यह कुछ प्रदर्शन विसंगतियों का कारण बनता है
इस tutorial के अनुसार आपके site administrator ने moodle website स्थापित किया है और आपको teacher के रूप में पंजीकृत किया गया है
इस tutorial के शिक्षार्थियों का moodle पर teacher login होना चाहिए
और कुछ course सामग्री उनके संबंधित course के लिए uploaded की गई है
यदि नहीं तो कृपया इस website पर संबंधित moodle tutorials देखें
इस tutorial का अभ्यास करने के लिए आपको अपने course में छात्र जोड़ना होगा
छात्र जोड़ने का तरीका जानने के लिए कृपया users in moodle tutorial देखें
मैंने अपने course में पहले ही priya sinha नामक छात्र को जोड़ दिया है
browser पर जाएँ और teacher के रूप में अपनी moodle site पर login करें
बाएँ navigation menu में calculus course पर click करें
हमने पहली श्रृंखला में एक page resource और folder resource को जोड़ा था
add हम कुछ अतिरिक्त course material जोड़ेंगे
basic calculus section के नीचे दाईं ओर add an activity or resource link पर click करें
resources की सूची के साथ एक popअप खुलता है इसे activity chooser कहा जाता है
नीचे scroll करें और सूची से url चुनें दाईं ओर resource के बारे में विस्तृत विवरण देखा गया है
url resource के साथ कोई online resources से links जोड़ सकता है
ये documents online videos wiki pages open educational resources आदि हो सकते हैं
activity chooser के नीचे add button पर click करें
name field में मैं evolutes of basic curves type करूंगी
फिर external url textbox में यहाँ लिखा url type करें
description टैक्स्ट भाग एक वैकल्पिक field है मैं यहां प्रदर्शित टैक्स्ट टाइप करूंगी
इस टैक्स्ट भाग के नीचे display description on course page checkbox पर click करें
अब section को विस्तृत करने के लिए appearance पर click करें
यहां display option यह the करता है कि video कैसे प्रदर्शित किया जाएगा
यहाँ dropdown में 4 options हैं: automatic options browser settings और screen resolution के आधार पर सर्वश्रेष्ठ options का चयन करता है
embed course के भीतर video को खोलता है open यूजर को उसी विंडो के भीतर url पर पुनर्निर्देशित करता है
in popup video को एक नए popअप window में खोलता है
जब आप in popup चुनते हैं तो popup width और popup height options इनेबल हो जाते हैं आप अपनी पसंद के अनुसार वैल्यू को संशोधित कर सकते हैं
मैं display option में embed चुनुंगी
नीचे activity completion section तक scroll करें और इसे विस्तृत करने के लिए इस पर click करें
यह section शिक्षक को यह तय करने में मदद करता है कि क्या वह किसी गतिविधि के पूरा होने को track करना चाहता है
यहाँ completion tracking में 3 options हैं
मैं यहाँ तीसरा option चुनती हूँ और student must view this activity to complete it checkbox पर click करें
नीचे scroll करें और नीचे save and return to course button पर click करें
activity name के आगे checkmark इंगित करता है कि गतिविधि कब पूरी हुई
अब book resource बनाते हैं जैसा कि name से पता चलता है कि इसमें कई पेज अध्याय और उपअध्याय होंगे
इसमें multimedia सामग्री भी हो सकती है
अब browser window पर वापस जाएँ
basic calculus section के नीचे दाईं ओर add an activity or resource link पर click करें
नीचे scroll करें और resources की सूची से book चुनें
activity chooser के नीचे add button पर click करें
name field में iterating evolutes and involutes type करें
यहाँ प्रदर्शित विवरण लिखें
section को विस्तृत करने के लिए appearance पर click करें
पहला option chapter formatting है यह the करता है कि हम अध्याय और उपअध्याय कैसे देखते हैं
options स्वव्याख्यात्मक हैं आप स्पष्टीकरण पढ़ने के लिए dropdown से पहले help icon पर click कर सकते हैं
मैं इसे numbers रहने दूंगी
अगला option style of navigation है यह the करता है कि हम पिछले और अगले links को कैसे दिखाते हैं
toc table of contents है
यदि हम images चुनते हैं तो पिछला और अगला arrows के रूप में दिखाया जाएगा
text पिछले और अगले अध्याय को navigation में दिखाएगा
हमारे पास प्रत्येक अध्याय navigation के लिए एक custom title प्रदान करने का option भी है
यह तब टैक्स्ट के रूप में दिखाए जा रहे अध्याय name को override करेगा
मैं text style of navigation के रूप में चुनुंगी
फिर इसे विस्तृत करने के लिए restrict access section पर click करें
default रूप से कोई प्रतिबंध नहीं है इसका अर्थ है कि जो भी इस course में नामांकित करता है वह इस किताब को देख सकेगा
add restriction button पर click करें
यहाँ कुछ options हैं आप हर एक के स्पष्टीकरण को पढ़ सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि किस प्रतिबंध का चयन करना है
हमने पहले बनाए गए url resource के लिए गतिविधि पूर्ण करने की शर्त रखी थी
हम इस पुस्तक के access को प्रतिबंधित करते हैं जब तक कि छात्र इसे पूर्ण के रूप में इंगित नहीं कर let
activity completion पर click करें प्रतिबंध के लिए हमारे द्वारा चुने गए option के आधार पर यहां के fields अलग होंगे
activity completion ड्रॉपडाउन में evolutes of basic curve चुनें
नीचे scroll करें और पेज के नीचे save and display button पर click करें
add हम इस पुस्तक में अध्याय और उपअध्याय जोड़ सकते हैं
chapter title में introduction type करें
content में introduction to evolutes and involutes type करें
पेज के नीचे save changes button पर click करें
अब आप इस अध्याय को पेज के बीच में देख सकते हैं और दाईं ओर table of contents है
exit book link पर क्लिक करने पर हमें वापस calculus course में ले जाएगा
ध्यान दें कि introduction अध्याय के नीचे table of contents block में दाईं ओर 4 icons हैं
edit delete hide और add new chapter
add मुझे एक उप अध्याय जोड़ना है add new chapter इंगित करने वाले plus icon पर click करें अध्यायों की तरह ही उप अध्याय बनाए जाते हैं
उनके पास यह इंगित करने के लिए एक अतिरिक्त checkbox है कि वे उप अध्याय हैं checkbox पर क्लिक करें
chapter title में classical evolutes and involutes type करें यहाँ प्रदर्शित कंटेंट कॉपी और पेस्ट करें
इस tutorial के code files में आपको इस bookiteratingevolutesandinvolutes odt के लिए सामग्री मिलेगी
पेज के नीचे save changes button पर click करें
अब आप उपअध्याय देख सकते हैं पिछले अध्याय के लिए navigation पर भी ध्यान दें
ध्यान दें कि दाईं ओर icon के पास में एक अतिरिक्त icon है
अप और down arrows अध्यायों को फिर से व्यवस्थित करने के लिए हैं
देखते हैं कि जब हम इस upअध्याय को ऊपर करते हैं तो क्या होता है
ध्यान दें कि introduction अब एक उपअध्याय के बजाय दूसरा अध्याय बन जाएगा
इसे फिर से पहले अध्याय के रूप में वापस ले जाएँ
कैसे how फिर से उप अध्याय के रूप में classical evolutes and involutes बनाते हैं
अब इसे उपअध्याय बनाने के लिए subchapter checkbox पर click करें
नीचे scroll करें औरsave changes button पर click करें
फिर से calculus course पर वापस जाएँ
अब हमारे पास basic calculus विषय के लिए निम्न resources हैं
हम इन्हें खींचकर इन resources को पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं
मैं अन्य दो के ऊपर evolutes of basic curves url drag करूँगी
प्रत्येक resource के दाईं ओर एक edit link है इस पर click करें
यहां resource को edit hide duplicate और delete करने के लिए settings है
यहाँ 2 options हैं move right और assign roles
move right पर click करें इससे resource को थोड़ा इन्डेन्टेशन मिलेगा
यह resource के दृश्य निरूपण के लिए सहायक है जो दूसरे resource का एक हिस्सा है
मैं इस resource को वापस उसकी move स्थिति में लाने के लिए move left पर click करूँगी
अब हम moodle से लॉगआउट कर सकते हैं
मैं छात्र priya sinha से login करूंगी
इस तरह छात्र priya sinha इस पेज को देखेगी
ध्यान दें कि completion boxes पहली बार ticked नहीं हुए हैं
उसे इस resource को पूर्ण रूप से चिह्नित करने के लिए इस url को देखना होगा
और book resource तब तक clickable करने योग्य नहीं है जब तक कि url resource पूरा चिह्नित नहीं हो जाता
evolutes of basic curves resource पर click करें
अब breadcrumb में calculus link पर click करें
इसी के साथ हम tutorial के अंत में पहुँचते हैं संक्षेप में…
इस tutorial में हमने url resource book resource और moodle में resources एडिट करना सीखा
यहाँ आपके लिए एक छोटा सा नियतकार्य है
निर्देशित के अनुसार उन्हें फिर से व्यवस्थित करें
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएँ आयोजित करती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया समय के साथ अपने प्रश्नों को इस forum में post करें
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है इस mission पर अधिक जानकारी दिखाई गई link पर उपलब्ध है
यह script विकास द्वारा अनुुवादित है मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ